हई एक रेलवे स्टेशन ह जवन की अदमी यहाँ से टिकट लेत हउवन जादा मुस्लमान हईं --

चारों तरफ़ से केरवा वाला ह और अगल-बगल खूब बड़ा बड़ा पेड़ ह आरी यानि पूरा हरा-हरा कालीन --